इस फोटो में सभी लोग पानी में खड़े हैं ठीक है नदी है कोई और यहां पर लोग पूजा कर रहे हैं कई लोगों के हाथों में--

फोर एट डबल सिक्स टु थ्री एक और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और पूरी बड़ी दुकान है एक अंकल अंदर बैठे हैं एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है।

जो सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है और दिन का समय है क्योंकि देखो रोशनी दिख--

फोटो ले रहा है उस लड़के का फेस हाइड किया हुआ है।

ऊपर एक ए_सी लगा हुआ है दो खिड़कियां हैं बच्चे हैं जिन्होंने लोअर टी शर्ट पहना है और यह एक्सरसाइज कर रहे हैं।

इस फोटो में एक लड़का दिखाई दे रहा है इसने एक बैग टांगा हुआ है जो नीले रंग का है।

ठीक है कॉलेज का ये फोटो है और दिन का समय है।

ठीक है उसके पीछे यहाँ पर स्नैकर बार दिख रहा है उसमें अंदर एक लड़का बैठा है।

ये लड़का इन लड़कियों को यहां पर मार्शल आर्ट सीख रहा है ठीक है जो अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है हर लड़की को आना--

सामने की तरफ कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ऊपर जो है पतंग उड़ती हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक बाइक दिखाई दे रही है बाइक पर हेलमेट लगा हुआ है।

इस फोटो में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।

जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है एक लेडी खड़ी हुई है।

इस फोटो में फर्श पर टाइल लगी हुई है वाइट कलर की यहां पर एक काले रंग का हेलमेट लगा है।

दो यहां पर बड़ी बड़ी सी जो है फोटो लगी हुई है जोकि कॉलर्ज वाली है देखो कितनी सारी फोटोज का कॉलर्ज बनाया हुआ है इसमें --

और ऊपर की तरफ एक कैमरा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है।

गिफ्ट शॉप है देखो ऊपर टैडी बियर भी रखे हैं पंखा लगा हुआ है एक लड़का बैठा हुआ है ठीक है मतलब ये गिफ्ट शॉप है यहां पे काफी सारी चीजें मिल रही हैं गिफ्ट ।

इस फोटो के सामने पंखा लगा हुआ है दीवार है सफेद रंग की--

एक ब्राउन कलर की है बैठी हुई है नीचे की तरफ मिट्टी दिखाई दे रही है।